तथा रोड दिखाई दे रहां हैं ।

बहुत सारी वाइन की बोटल रखी हुई है ।

अपनी अपनी ड्रेस पहनी है। स्टूडेंट्स के पीछे --

मुझे इस इमेज में एक --

तथा भार एक पेड़ी हैं।

इस सलून के बाहर एक सलून का पोस्टर भी लगा हुआ है।

जैसे डंपेल्स चेस्ट मशीन रनिंग मशीन --

पेड़ लगे हुए है एवम हल्की सी घांस है।